कुछ बंदे दिख रहे है वो कुछ योगा कर रहे है एक बंदे ने रेड कलर की टी-शर्ट पहन रखी है और कुछ बच्चे है।

और कुछ मशीन दिख रही है रेत पड़ी है गिट्टी पड़ी है कुछ लकड़ी पड़ी है और सरिया है।

दो गाड़ी दिख रही है एक आदमी दिख रहा है एक आधी गईया दिख रही है।

किसी देवी-देवता का स्थान है पेड़ दिख रहे हैं पब्लिक बैठी है बहुत सारी चप्पल दिख रही है।

कुछ बिछा है आसमान दिख रहा है कुछ झंडे दिख रहे हैं और भी बहुत कुछ दिख रहा है।

आज गाड़ी खड़ी है एक स्प्लेंडर है एक सुजुकी है एक साइन है।

आधी दीवार हुई है पिलर है लगता है लोन से घर बन रहा है।